यह एक दुकान जैसी बनी हुई है और इसमें बहुत सारे विंडो और दरवाजा जो कांच का बना हुआ है।

उधर एक टंकी भी लगी हुई है और नीचे सब जमीन खुदखुदी सी पड़ी हुई है और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

एक कुछ पत्थर से तोड़फोड़ रहा है और उधर भी कुछ सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है और टीन भी बहुत सारी पड़ी हुई है।